नांन्हेर है जिस पर कुछ कच्ची सड़क दिख रही है। सामने बहोत बड़ा पर्वत है।

आगे उसके केक रखा हुआ है ब्लू और येल्लो कलर का केक है टेबल है जो की बलून से सजाई गयी है और उसमे एक गोल्डन कलर की झलर लटकाई गयी है चोरो तरफ लोग सजे हुए है नीचे जमीन पर कुछ बल्लूंस का पैकेट फुला डला हुआ है।

जिसमे रेड ब्लू और--

हाथ को पैर को आगे को कर रहा है और कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है और कुछ बड़े बड़े पेड़ है नीचे कुछ कचरा फैला ड्रा हुआ है कुछ कीली सड़--